रंगल छ आगे से गमला रखल छ पलस्तर करल--

बाजा छै केतेने बोर्ड टांगल छय नारियल क पेड़ बहुते छय घेरल छय उधर पार्क छय एने मोटर साइकिल छै बहुते ल --

बगल से पहाड़ है ओकर पेड़ छेगा--

चारों बगल ग्रील लगल छै बगल से गग गाछ छै नीचा--

पीछे घर है आर्यन भवन लिखल है।